सफेद सफेद कलर के बीच में कुछ अनाज पड़ा है।

पास इडिये बनी हुई है रोलिंग लगी हुई है।

यहां बीच में एक ढोल पड़ा है ड्रम पड़ा है पीछे एक बॉटल पड़ी है और दीवार के ऊपर कुछ सामान पड़ा है ऊपर एक --

और अलग अलग कलर की हैं सामने कुछ लाइटें लगी हुई है नीचे भी कुछ बहोत बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हुई हैं सी_सी_टी_वी कैमरा है।

सीढ़ियां बनी हुई है रोलिंग लगी हुई है बाहर ग्राउंड में गाड़ी खड़ी है सफेद कलर की नीचे पर ईंटें पड़ी है।

यहां पर सामने छोटे छोटे गमले पड़े हैं रेड कलर के रेड कलर के गमलों के ऊपर पौधे लगे हुए हैं और बीच में --

अंदर के साइड कुछ लोग खड़े हैं कुछ स्टूलें और कुर्सियां टेबलें पड़ी हैं ऊपर और भी रूम बने हुए हैं दरवाजे दिखाई दे रहा है।

यहां पर ऐमू नाम लिखा हुआ है।

बाहर के साइड एक फ्रिज पड़ा है फ्रिज के अंदर कोल्ड ड्रिंक्स की बोतले पड़ी है अंदर की साइड बहुत सारे लोग खड़े हैं।

और सामने दूर दूर तक दिखाई दे रहे है बहोत ही गहरे गहरे हरे कलर के बहोत ही ज़्यादा पेड़ लगे हुए हैं।

इस तस्वीर के अंदर यहां पर ये बहोत बड़ा रूम बना हुआ दिखाई दे रहा है यहां पर बहोत सारी स्टूले पड़ी है बेंच पड़ी है कुर्सियां पड़ी है।